सामने एक खिड़की है जिस से एक में कांच लगी है वो खुली है रौशनी अंदर आ रही है कांचे लगे है।

नदी है नदी के ऊपर एक बड़ा-सा ब्रिज बना है जोकि काफी पुराना दिख रहा है।

पेड़ पौधे है जो की हरा भरा पीछे की ओर कुछ पेड़ है जो कि एक हरा भरा है और दो सूखे हैं।

एक बड़ा सा तलाब है तलाब में एक ब्रिज है ब्रिज से पानी निकल रहा है अब ब्रिज काफी पुराना है डैम काफी पुराना है।

एक बड़ा-सा पहाड़ है पहाड़ मे बहोत से घासें है पेड़-पौधे है जोकि हरा-भरा है बहोत से छोटे-छोटे पत्थरे है बड़े पत्थर है पहाड़ो मे घासें जम गई है जोकि हरा-भरा है।

अगल-बगल पेड़-पौधे घासे है जोकि हरा-भरा है।

एक बड़ा सा नदी है नदी के बीच में ब्रिज है जोकि पुराना दिख रहा है सामने एक और ब्रिज है जोकि वो रास्ता है।

एक डिज़ाइनदार पत्थर लगी हैं पीछे बड़ा सा माकन है पीछे बड़ा सा मस्जिद--